भैया ने टोपी भी पहन रखी है यहां पे एक टेबुल है टेबुल पे लाल कलर का कपड़ा बिछा हुआ है।

यह एक बैनर लगा है बैनर पे लिखा है इंडिया ओवर जिस बैंक यहां एक बैंक है यहां पे ब्लू कलर की लाइट जली है यहां पे शटर भी लगा है।

यहाँ एक गाड़ी स कंपनी है जहां पर गाड़ी सही कर रहे हैं। दो भैया गाड़ी सही कर रहे हैं।

यहाँ पे दुकान का कलर ग्रीन है।

यहाँ एक कैनरा बैंक है यहाँ ए.टी.एम. भी है यहाँ पे शटर भी लगा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पम्प हैं यहाँ पर बहूत सारी भीड़ लगी हैं सब अपनी-अपनी गाड़ी लेके खड़े हुए हैं।

यह एक छत है| छत के ऊपर बोहत सारी छड़ियाँ लकड़ी और ताइपोन है| यहाँ पे दो भैया लकड़ियों पे चढ़े हुए है| अपना काम कर रहे है।

भैयाओं ने टोपी भी पहन रखी है।